यह एक डांस क्लास है जहा पे कुछ बच्चे डांस कर रहे हैं बहुत सारी लड़कियां जो है वो अलग-अलग रंग की मेट पे खड़ी हुई डांस कर रही है।

मेट का जो रंग है वो पिंक बैगनी और ऑरेंज रेड है हाँ पे सभी लड़कियों नो अलग-अलग रंग के कपड़े पहने है।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

यहा पर दो महिलाएं हैं एक महिला जो है वो डांस की मुद्रा में है उसने ड्रेस पहनी है जो कि गोल्डेन और ऑरेंज --

अलग-अलग कलर की लाइटिंग है जैसे कि रेड कलर की व्हाइट कलर की ग्रीन कलर की बहुत सारे लोग खड़े हुए है ऊपर आसमान है ब्लैक कलर का।

यहाँ पर एक शादी का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें दूल्हे का सेहरा नजर आ रहा है जो की लाल कलर का है।